यह एक पेट्रोल टैंक की तस्वीर है इसमे ऊपर की तरफ नारंगी रंग की बॉर्डर बनी हुई है इसमे पेड़ लगे हुए है सामने घाँस लगी हुई हैं।

--पेट्रोल टैंक का ऑफिस है जिसमें पीले रंग का ऊपर दीवार पर कलर दिया हुआ है सामने एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है जिसके सामने पर्दे नीले रंग के है पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक पेट्रोल टैंक का ऑफिस हैं इसमें ऊपर सफ़ेद और लाल रंग की पट्टी लगी हुई हैं।

--नीचे इसमें कथे रंग की बॉर्डर बनी हुई है सामने कुछ बाइक खड़ी हुई हैं ऊपर आसमान नज़र आ रहा है पीछे पेड़ दिख रहे है।

यह एक पेट्रोल टैंक की तस्वीर हैं इसमें नीचे लाल रंग के पिलर हैं ।

यह एक रेलवे स्टेशन तस्वीर हैं इसमें पूरा एक नीले रंग का रेल दिख रही हैं तरफ़ इसमें पीले रंग के पिलर दिख रहे हैं साईड मे कुछ कुर्सियां नज़र आ रही हैं।

पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहे है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है यहाँ सामने भी हरे और नारंगी पेड़ दिख रहे हैं ।

यह एक तलब की तस्वीर है जिसके ऊपर रेलिंग बनी हुई है।

यह एक डैम की तस्वीर हैं जिसमें एक झरना दिख रहा हैं जो सफेद रंग का हैं।